कुछ खेल खिलौने रखे हुए हैं और कुछ डब्बों में खिलौने रखे हुए हैं और कुछ नीचे भी रखे हुए हैं।

इसमें कुछ आलू रखे हुए हैं।

रास्ते पर एक रिक्शा और कुछ गाड़ियां भी दिख रही है।

इस फोटो में एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें एक गेट लगा हुआ--

इस फोटो में एक आपिस दिखाई दे रहा है जिसमें एक अंदर एक गेट लगा हुआ है।

और कु और द नीचे कुछ हरे हरा घास भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ शीशे भी लगे हुए हैं।

इसमें अलमारी लगी हुई है।

और बेड पे लकड़ी का समान रखा है।

इस फोटो में एक ओपिस दिखाई दे रहा है।

इसमें एक कुर्सी रखी हुई है।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

और कुछ पेटी भी रखी हुई हैं और कुछ बाइक भी दिख रही हैं।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

और कुछ ऑटो बाइक भी दिख दिखाई दे रही है।

और बराबर में एक रस्ता भी दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें एक बेड और कुछ सोफे रखे हुए हैं।

कुछ ग्रिल भी लगी हुई है और--

दिखाई दे रही है और एक बराबर में गेट भी दिखाई दे रहा है।

पीछे कुछ पहाड़ी भी दिखाई दे दे रहे हैं।

इस फोटो में एक रास्ता दिखाई दे रहा है।